छोटा-छोटा पत्थर भी दीख रहा है ग्रीन ग्रीन घास लगी हुई दीख रही है सामने बादल दिख रहे है।

यहाँ पर एक बहोत बड़ा जंगल दिख रहा है जहाँ पे बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं कुछ बहोत सारी हरी हरी घासें लगी हुई हैं।

यँहा पर स सड़क जाता हुआ दिखाई दे रहा है जँहा पे कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं रेड और ब्लू कलर की है।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

यहाँ पर कच्ची सड़क जाती हुई दिखाई दे रही है और नीचे की तरफ पूरा खाई दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा पहाड़ जैसा बना हुआ दिख रहा है उसमें बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं कुछ पत्थर दिखाई दे रहे --